और नीचे का स्पेस अच्छा है।

यह मेडिकल स्टोअर की दुकान है जो सजी हुई है।

कई प्रकार के दवाई रखी गई हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी --

इस सिवान को ट्यूबवेल लगाकर--

खुली है कुछ लोग अंदर भी हैं बाहर भी--

लेकिन किसी स्टेशन का स्टेचू लगा हुआ--